कुछ कार के बोनट बंद है उनके मैकेनिक्स भी वहां पे खड़े हैं बहोत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स रखी हुई है यहां पर--

और केम पानी का कैंपर रखा हुआ है। कुछ अलमारियां खाली पड़ी है।

बिस्किट आइसक्रीम सब कुछ मिलता हैं कुछ लोग यहां पर पिज्जा खा रहे है सैंडविच खा रहे हैं।

ये स्कूल है हिंदी मीडियम स्कूल के बाहर दो ब्लू कलर के फाइबर है एक साइड जनरेटर रखा हुआ है एक साइड बाइक्स रखी हुई है।